इस इमेज में मुझे पहाड़ी टोपी दिखाई दे रही है जो हरे और लाल कलर --

नाई है यहां पर पेड़ भी है यहां साइड में एक और दुकान भी दिखाई--